दो तीन चार पांच लोग नजर आ रहे हैं।

गाड़ी नजर आ रहे हैं।

लाइन लाइन से खींचा हुआ एक मार्किंग नजर आ--

नीचे एक गाछ भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक मस्जिद नजर आ रहा है।

होगी नजर आ रहा है जिसमें हल चरा हुआ है।

घास नजर आ रहा है मुझे।

बहुत सारे जर्सी कपड़े नजर आ रहे है।

ए_सी भी नजर आ रहा है और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में।

न्यूज पेपर नजर आ रहा है न्यूज पेपर मे एक बच्चा का फोटो चिपकया हुआ है।

बहोत सारे फूल नजर आ रहे हैं मुझे इस फोटो में।

लाल रंग कपड़ा पहना हुआ है।

प्लास्टिक से बने हुए डेकोरेशन भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत बड़ा चर्च नजर आ रहा है।

पिछले बहुत सारा जंगल नजर आ रहा है में और मोटा मोटा

बहोत सारा बादल भी नजर आ रहे हैं मुझे।

बहोत सारा लाइट रिफ्लेक्शन नजर आ रहा हैं।

बहुत सारा लोहा का पाइप भी नजर आ रहा है।

इसमें बहोत सारा आदमीन नजर आ रहा है।

वाहन नजर आ रहा है।

बहुत सारा जंगल नजर आ रहा है बहुत सारा पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

एक पीछे बहोत बड़ा जंगल है।